साइड में व ऊपर वगैरा टीन वगैरा पड़ी हुई हैं।

यह दो एक लेडीज एक आदमी खड़े हुए हैं।

ए इन दोनों ने रेड कलर का एक ने कोट पहन रखा है एक ने फ्रॉक वगैरह डाल रखा है।

इसके पास में कितनी सारी दुकाने वगैरा और हैं।

पास में स्कूटी खड़ी है खंबा खड़ा है खंभे पर बैनर लगा हुआ है।

फ्रॉक वगैरा टंग रहे रेड कलर --

यह कोई स्टोर वगैरा है।

पीला व्हाइट कलर हो रहा है पास में टीन पड़ी हुई है।

इस के पास में यह शामली के पास में पड़ता है इसके पास में थोड़ी पेड़ पेड़ पौधे है एक गाड़ी खड़ी है।

दो तीन लाल कलर के टोकरियां रखी हुई हैं इसके पास में पन्नी में कुछ सारे सामान कप वगैरा रखे हुए हैं।

यह लेडिस बैठी है ये लैपटॉप में कुछ कर रही है।

के पास में कितने अच्छे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं।

इसके पास में पार्क है।

और इधर भी सारा छपरा है।

पीछे एक टेंपो सा और खड़ा हुआ है।